यहां पर एक झूमर भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के पीछे रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है और --

हरे-भरे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बिल्डिंग का कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है।

और साथ में एक बहोत बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा है।

दूसरी ओर भी कुछ व्यक्ति बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं।

दो व्यक्ति बाइक पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

सड़क पर बहुत से व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इनमें से वाइट येलो और --

ऊपर से बोहोत सी रोशनीयां आपकी नजर आ रही है।

यहां पर एक पुतला रखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक महिला जूते लेते हुए नजर आ रही है।

साथ में ही यहां पर बहोत से पोस्टर भी लगाए हुए हैं।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

यहां पर बहोत सी लाइट्स लगाई हुई नजर आ रही हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ महिलाएं सामान लेती हुई नजर आ रही हैं।

और इसके ऊपर से बहुत सी लाइट्स भी लगी नजर आ रही है।

इसकी खिड़कियों का कलर ब्लैक नजर आ रहा है।

यहाँ पर बहुत से घर नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत बड़ी विल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सी घास लगी हुई नजर आ रही है।

यहां इसके आगे छोटी-छोटी सीढ़ियां लगी --

दो छोटे लैपटॉप और दो बड़े लैपटॉप --

पीछे की दीवारों का वाइट कलर नजर आ रहा--

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा कार वॉश होम --

इसकी साइड से एक रोड है।

यहां पर बहुत से उपड़-खाबड़ --

इस पे छोटी छोटी हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

और यहां शीशे के टेबल बने दिखाई दे रहे है।

जिस पर बड़े-बड़े चट्टान और पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक औरत ने रेड कलर की साड़ी पहने हैं।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

छत के पीछे घना जंगल दिखाई दे रहा है।

और ये हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे हाउसकीपिंग करते हुए--